लिनक्स में working with regular files पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
files और directories मिलकर लिनक्स files system को बनाती हैं
पिछले tutorial में हम देख चुके हैं कि directories में कैसे कार्य करें आप इस website पर tutorial पा सकते हैं
इस tutorial में हम देखेंगे कि regular files को कैसे संभालें
हम पहले से ही अन्य tutorial में देख चुके हैं कि हम cat command का उपयोग करके file कैसे बना सकते हैं विवरण के लिए कृपया इस website पर जाएँ
देखते हैं कि file को एक जगह से दूसरी जगह कैसे copy करें इसके लिए हमारे पास cp command है
देखते हैं कि command का उपयोग कैसे करें
single file copy करने के लिए हम type करेंगेcp space एक या अधिक option space source file का name space गंतव्य file का name
उसी समय कई files को copy करने के लिए हम लिखेंगेcp space एक या अधिक option source files का नाम जो हम copy करना चाहते हैं और गंतव्य directory का नाम जिसमें यह files copy होंगी
चलिए एक उदाहरण देखते हैं पहले हम terminal खोलते हैं
हमारे पास पहले से ही home directory में test1 named file है
देखने के लिए कि test1 में क्या है हम $cat test1 करेंगे और enter दबायेंगे
test1 में दिखाये गए content को हम देख सकते हैं as यदि हम इसे test2 नामक अन्य file में copy करना चाहते हैं हमें $cp test1 test2 लिखना होगा और एंटर दबाना होगा
अब file copied हो गई है
यदि test2 मौजूद नहीं है तो यह पहले बनानी होगी और फिर test1 का content इसमें copied करना होगा
यदि यह पहले से ही मौजूद है तो यह अपने आप अधिलेखित हो जायेगा copied की गई file को देखने के लिए $cat test2 type करें और एंटर दबायें
आप files को भिन्न directories से और भिन्न में भी copy कर सकते हैं उदाहरणस्वरूप $cp/home/anirban/arc/demo1 जो कि files का नाम है जिसे हम copy करना चाहते हैं/home/anirban/demo2 टाइप करें और एंटर दबायें
यह क्या करेगा कि यह फाइल demo1 को source directory/home/anirban/arc/से गंतव्य directory/home/anirban में copy करेगा यह demo2 name से फाइल copy करेगा
यह देखने के लिए कि demo2 यहाँ है ls space/home/anirban type करें और एंटर दबायें
आप देखेंगे कि demo2 यहाँ है
आगे बढ़ने से पहले screen साफ करें
यदि आप गंतव्य directory में file का वही name रखना चाहते हैं आप file के name का भी उल्लेख नहीं कर सकते उदाहरणस्वरूप
$cp/home/anirban/arc/demo1/home/anirban/type करें और enter दबायें
यह फिर से demo1 फाइल को/home/anirban/arc/directory से/home/anirban directory में अच्छी तरह से demo1 फाइल name के साथ copy करेगा
demo1 को देखने से पहले ls/home/anirban type करें और enter दबायें
और आप देख सकते हैं कि demo1 file यहाँ है
फिर से again बढ़ने से पहले screen साफ करें
एक और उदाहरण तब हमें गंतव्य file का name देने की आवश्यकता नहीं होती जब हम कई file copy करना चाहते हैं
हम मानते हैं कि हमारे पास हमारी home directory में test1 test2 test3 named तीन files हैं
अब हम $cp test1 test2 test3/home/anirban/testdir type करेंगे और enter दबायेंगे
यह बिना इनके named बदले सभी तीनों files test1 test2 और test3 को/home/anirban/testdir directory में सेव करेगा
आप देखेंगे कि यह files वास्तव में copied की गई हैं हम ls/home/anirban/testdir type करेंगे और enter दबायेंगे
जैसा कि आप देख सकते हैं test1 test2 और test3 directory में मौजूद हैं
यहाँ cp में कई विकल्प हैं यहाँ हम उनमें से केवल अति महत्वपूर्ण ही देखेंगे
पहले slides पर वापस जायेंगे
विकल्पों में केपिटल r एक महत्वपूर्ण है यह एक पूर्ण directory संरचना की पुनरावर्ती कॉपी का कारण बनता है
एक उदाहरण देखते हैं
testdir directory के सभी contents को testनामक directory में copy करने का प्रयास करें
उसके लिए हमें cp testdir/test type करना होगा और enter दबाना होगा
जैसा कि आप output message से देख सकते हैं
साधारणतः हम कुछ content के साथ directory को cp command से copy नहीं कर सकते
लेकिनr option का उपयोग करके हम यह कर सकते हैं
अब हम cpr testdir/test type करेंगे और enter दबायेंगे
files अब copied हो चुकी है यह देखने के लिए कि टेक्स्ट directory वास्तव में मौजूद है ls type करें और enter दबायें
जैसा कि आप let सकते हैं test directory मौजूद है screen को साफ करें
test के अंदर contents देखने के लिए ls test type करें और enter दबायें
आप test directory का कंटेंट्स देख सकते हैं
अब हम वापस slides पर चलते हैं
हमने देखा यदि file अन्य file में copied होती है जो कि पहले से ही मौजूद है तो मौजूदा file अधिलेखित होती है
अब क्या यदि हम एक महत्वपूर्ण file को अनजाने में अधिलेखित करते हैं
ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए हमारे पास केपिटलb option है
यह प्रत्येक मौजूद file का बैकअप बनाता है
हमi interactive option का उपयोग भी कर सकते हैं यह हमें हमेशा किसी भी गंतव्य file को अधिलेखित करने से पहले चेतावनी देता है
अब देखें कि mv command कैसे कार्य करती है
इसका उपयोग files के स्थानांतरण के लिए किया जाता है अब देखते हैं कि यह कैसे उपयोगी है
इसके दो मुख्य उपयोग हैं
इसका उपयोग file या directory को फिर से नाम देने के लिए किया जाता है
यह files के समूह को विविध directory में स्थानांतरित भी करती है
mv cp के समान है जो हम पहले ही देख चुके हैं अतः जल्दी से देखते हैं कि mv का उपयोग कैसे किया जा सकता है
हम terminal खोलते हैं और $mv test1 test2 type करते हैं और enter दबाते हैं
यह test1 named फाइल को नया named देगा जो फाइल test2 named से home directory में पहले से ही मौजूद है
यदि test2 पहले से ही मौजूद है तो यह अपनेआप अधिलेखित हो जायेगी
यदि हम file के अधिलेखित होने से पहले चेतावनी चाहते हैं
हम mv command के साथi option का उपयोग कर सकते हैं
मानते हैं कि हमारे पास anirban named दूसरी file है इस file का भी हम test2 के रूप में नवीनीकरण करना चाहते हैं
हम mvi anirban test2 type करेंगे और enter दबायेंगे
जैसा कि आप देख सकते हैं चेतावनी दी जा रही है कि क्या test2 अधिलेखित होनी चाहिए या नहीं
यदि हम y दबाते हैं और फिर enter दबाते हैं तो file वास्तव में अधिलेखित हो जायेगी
हम विविध files के साथ cp के जैसे mv का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इस case में गंतव्य directory होना चाहिए
आगे बढ़ने से पहले screen को साफ करें
मान लीजिए कि हमारे pop हमारी home directory में abc txt pop txt और push txt named तीन files हैं
उनकी मौजूदगी को देखने के लिए ls type करें और enter दबायें
files pop txt push txt और abc txt यहाँ हैं screen को साफ करें
अब हम इन तीन files को testdir नामक directory में स्थानांतरित करना चाहते हैं
हमें क्या करने कि जरूरत है कि mv abc txt pop txt push txt और फिर गंतव्य folder का name type करें जो कि testdir है और enter दबायें
उनको देखने के लिए ls testdir type करें और enter दबायें
आप files abc pop और push txt देख सकते हैं
अब mv में कुछ options देखते हैं पहले slides पर वापस चलते हैं
mv command मेंb या –backup option उपलब्ध हैं यह प्रत्येक file के अधिलेखित होने से पहले इन्हें गंतव्य में बैकअप करेगा
i option जिसे हमने पहले ही देखा किसी भी गंतव्य file के अधिलेखित होने से हमें पहले चेतावनी देता है
अगली command जो rm देखेंगे वह rm command है इस command का उपयोग files को डिलीट करने के लिए किया जाता है
terminal पर वापस जायें और ls testdir type करें
हम faq txt नामक मौजूद file को देख सकते हैं मान लीजिए कि हम इसे डिलीट करना चाहते हैं
इसके लिए हम $rm testdir/faq txt type करेंगे और एंटर दबायेंगे
यह command faq txt फाइल को/testdir directory से हटा देगी
यह देखने के लिए कि file वास्तव में हट गई है या नहीं फिर से ls testdir टाइप करें और enter दबायें
हम अब file faq txt नहीं देख सकते
rm rm command को विविध files के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं
testdir directory में दो files हैं abc2 और abc1
मानिये कि हम abc1 और abc2 files को हटाना चाहते हैं
इसके लिए rm rm testdir/abc1 testdir/abc2 type करेंगे और enter दबायेंगे
यह abc1 और abc2 files को testdir directory से हटा देगा
यह फाइल्स हटी हैं या नहीं देखने के लिए फिर से ls testdir type करें abc1 और abc2 फाइल्स नहीं हैं
आगे बढ़ने से पहले screen को साफ करें
अब slides पर वापस जाते हैं
चलिए सारांशित करते हैं हमने अभी जो कहा
वो यह कि एक file को डिलीट करने के लिए rm rm लिखते हैं और फिर file का name
विविध files को डिलीट करने के लिए rm rm लिखते हैं और उन विविध files का name जो rm डिलीट करना चाहते हैं
अब rm command के कुछ options को देखते हैं
कभीकभी file सुरक्षित होती हैं जो rm का उपयोग करके भी डिलीट नहीं होती हैं इस case में हमारे पासf option है जिसका उपयोग file को डिलीट करने के लिए किया जा सकता है
अन्य सामान्य option हैr option चलिए देखते हैं कि यह option कहाँ उपयोगी है
terminal पर वापस जाते हैं
directories डिलीट करने के लिए सामान्यतः rm command का उपयोग नहीं करते हैं उसके लिए हमारे पास rmdir command है
लेकिन rmdir command साधरणतः directory डिलीट करती है उसके बाद ही वह रिक्त होती है
यदि हमें एक directory डिलीट करनी है जिसमें कई files और उप directory मौजूद है तो हम क्या करें
rm command से इसके करने की कोशिश करते हैं
rm और directory जो rm डिलीट करना चाहते हैं जो है testdir type करते हैं और enter दबायें
output message से rm देख सकते हैं कि rm testdir को डिलीट करने के लिए rm directory का उपयोग नहीं कर सकते
लेकिन यदि हमr औरf option जोड़ते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं
rmrf testdir press करें और फिर enter दबायें
अब testdir directory सफलतापूर्वक डिलीट हो चुकी है
अगली command के अध्ययन के लिए slides पर वापस जाएँ
cmp command
कभीकभी हमें यह जाँचने की आवश्यकता होती है कि क्या दो files समान हैं यदि वे समान हैं तो हम उनमें से एक डिलीट कर सकते हैं
और हम देखना चाहते हैं कि क्या पिछले version से file बदल गई है
इनके और कई अन्य उद्देश्यों के लिए हम cmp command का उपयोग कर सकते हैं
यह दो files की byteदरbyte तुलना करती है
file1 और file2 की तुलना करने के लिए हमें cmp file1 file2 लिखना होगा
यदि दो files में पूर्ण रूप से समान कंटेंट है तो कोई भी message नहीं दिखाया जायेगा
केवल prompt मुद्रित होगा
यदि उनके कंटेंट्स में भिन्नता है तो terminal पर पहले बेमेल का स्थान मुद्रित होगा
देखते हैं cmp कैसे कार्य करता है हमारे पास हमारी home directory में sample1 और sample2 named दो files हैं
देखते हैं उनमें क्या है
cat sampe1 type करें और enter दबायें इसमें this is a linux file to test the cmp command text है
अन्य file sample2 में text होगा और इसको देखने के लिए हम cat sample2 type करेंगे और enter दबायेंगे
इसमें this is a unix file to test the cmp command text होगा
अब हम cmp command को इन दो files पर लागू करेंगे
हम cmp sample1 sample2 लिखेंगे और enter दबायेंगे
जैसा कि हम देख सकते हैं कि sample1 और sample2 दो files में पहला अंतर बताया गया है
अगली command पर जाने से पहले screen को साफ कर दें
अगली command जो हम देखेंगे वह है wc command
इस command का उपयोग file में lines शब्द और अक्षरों की संख्या की गणना के लिए किया जाता है
हमारे पास हमारी home directory में sample3 named file है
इसके कंटेंट को देखने के लिए हम cat sample3 type करेंगे और enter दबायेंगे
sample3 का कंटेंट यह है
अब इस file पर wc command का उपयोग करते हैं
इसके लिए हम wc sample3 लिखेंगे और enter दबायेंगे
command दर्शाती है कि उस file में 6 lines 67 शब्द और 385 अक्षर हैं
ये कुछ commands थी जिन्होंने हमें files के साथ कार्य करने में मदद की
यहाँ कई सारी commands हैं इसके अलावा प्रत्येक commands जो हमने देखी उसमें कई अन्य options हैं
मैं आपको man command का उपयोग करके उनके बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ
अब हम इस tutorial के अंत में आ चुके हैं
spoken tutorial talktoa teacher project का हिस्सा है जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता mission ने a सी टी ict के माध्यम से समर्थित किया है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
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद